और रेड कलर की चेयर हे ओर यह फोटो नर्सरी का हे ओर ये जो --

दिखने में यह हरा लग रहा है लेकिन फोटो में यह हरा नहीं असल में ये सफ़ेद है | ऊपर सफ नीला आसमान है एक बड़ा सा गेट है अंदर जाने का और दो लाइटिंग वाले पोल खड़े --